मिनिस्टर टीचर लोग बैठे हैं।

बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें और --

यहाँ एक मोर है जो की खड़ा होके देख रहा है ।